नीले कलर की टीशर्ट पहने हुए है पर्पल और ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए औरत दिखाई पड़ रही है।

पास में एक मेज दिखाई पड़ रही एक फ्रिज रखी ऊपर की तरफ पंखा लगा हुआ है बहुत सारी लाइटे लग रही है।

एक औरत और दो तीन आदमी और बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं।

यहाँ पे काफी सारी बाउंड्री दिखाई पड़ रही है बाउंड्री के अंदर गमले रखे हुए हैं कु--

एक बच्चा दिखाई पड़ रहा पास में आपको गेट के बाहर में एक घर दिखाई पड़ रहा है।